एक घर है और यहाँ पे एक नाव है।

और नाव नाव को रोकने के लिए --

ये व्यक्ति कार्पेंटिंग कर रहे हैं।

बड़ा दिखने मे है। जिसमे की किताबे रखी हुई हैं। पुस्तक भंडार --